सूखने के लिए रखा गया है यहां पे बहुत सारे रेती है आजू बाजू बहुत सारे पेड़ भी हैं।

और यहां पे बुश भी रखा हुआ है और खाने के आइटम्स और इनो है बहुत सारे आइटम्स --

बहोत सारे लोग भी हैं लेडिस जेंट्स सभी है और फ्लावर से भगवान के ऊपर सजाया गया है।

इसके बाहर पर्दे भी है और लेफ्ट साइड में टेंपल है म् पिलर --

यह एक किराना शॉप है। यहां पे बहोत सारे डिफरेंट किराना मिलते हैं जैसे यहां पे चाकलेट्स के डब्बे रखे हुए हैं चावल के थैले हैं।

डेटॉल की बॉटल भी है यहां पे मैगी भी है यहां पे डिफरेंट --

और उसमें दो लोग खड़े हुए हैं और ये टायर भी दिख रहा है।